यहां पर हमें एक मच्छी मार्केट दिखाई दे रहा है।

हिरन यहां पर अपने बच्चे के साथ नजर आ रही है।

सामने की तरफ पेड़ पौधे हरियाली भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बुद्ध महाराज की तस्वीर लगी हुई नजर आ रही है।

हमें यहां पर एक पार्क जैसा दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

हमें यहां पर पानी के झरने जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

अंदर की तरफ काले कलर की कुर्सियां भी हमें दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें कुछ होटल जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

होटल के अंदर कुछ व्यक्ति भी हमें नजर आ रहे हैं।

अलग-अलग कलर की मच्छियां भी हमें दिखाई दे रही है।

यह दृश्य हमें सीढ़ीओ का दिखाई दे रहा हैं।

तालाब के अंदर दो बत्तख दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर के बाहर कई व्यक्ति खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जिम के अंदर कुछ मशीने भी हमें दिखाई दे रही हैं।